यह बिसात खाने की दुकान है। या --

यह मूर्ति बनी है। भाड़ी मूर्ति कितनी बढियां मूर्ति बनाई है। कलर देख के तो अच्छा लगत। इते बादर है खूब। नीलो आसमान को कलर ऐ।